ये चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम तें एक लड़का अर लड़की छन दिखेणी।

यख मा जु छा एक रोड छ दिखेणी यख उधम एक नदी छे दिखेण लगी नदी का बिच्च मा एक पुल भी छ बण्यु यु पुल जु छा लुहा का पुल छ लग्ण लग्युं।